और उसके बाद वह उसकी सेविंग करेगा --

अअअ सब्जी की मार्केट लगी हुई है वीकली --

कंप्यूटर पे एक आदमी कोई चीज देख रहा है।

इसमें कोई भी आदमी नहीं बैठा है।

ड्राई फ्रूट की सोप है रेड़ी पे लगी हुई है।

और दूसरे अन्य ड्राई फ्रूट भी लगे हुए हैं एक आदमी बातचीत कर रहा है मोल भाव खरीदने के लिए --

बच्चे गेम खेल रहे हैं।

कट्टों में सामान भर के उसके आगे रखा हुआ है।

हा तो उसके पीछे काफी सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं।

और सूर्यास्त होते होने के समय का यह फोटो है।

वो फाउंटेन के किनारे साइड में बैठा हुआ है।

उनका नाम है प्रेसिडेंट हो सिन मी --

और साथ में लोग खरीदारी कर रहे हैं।

दीवार पे नोटिस बोर्ड का बना हुआ है।

बाहर बअअ दीवार की बाउंड्री है।

और अंदर में कोई आदमी नहीं बैठा हुआ --

सात लोग से ज्यादा ही बैठे हुए हैं।

ये एक सिनेमा हॉल का फोटो है।

काफी सारे टेंपो खड़े हैं एक दो --

और उसमें दो साइड में डस्टबिन भी हैं।

कोई पुराना किला है और उसके सामने पेड़ है।

और काफी अच्छा अनुभव है।

कोई भी ग्राहक नहीं दिख रहा।